यहाँ पे हमें एक जिकजैक वे में नदी जाती हुयी नजर आ रही है नदी का पानी नीला कलर का दिख रहा है जो बहोत ही प्यारा लग रहा है और यहाँ पे बहोत सारे पहाड़ और यहाँ पे बहोत सारे धुवे निकल रहे हैं।

इस दुकान के अंदर बहोत सारे सामान रखे गये हैं ऊपर फेन लगा हुआ है लाईट जलती हुई नजर आ रही है घड़ी लगा हुआ है।

यहाँ पे एक बड़ी सी रोड जाती हुई नजर आ रही है रोड के साईड-साईड में बहोत सारे पहाड़ हैं और एक दम रोड के बीचो बिच एक दम किनारे पे छोटा सा दुकान है दुकान पतरे का बना हुआ है ।

स्कुल है स्कुल का बोर्ड लाल कलर का लगा हुआ है जो बहोत ही प्यारा लग रहा है एक लाईट जलती हुई नजर आ रही है।

और नीचे जमीन पे एक लाईन से गमले रखे गए है जिसके अंदर छोटे छोटे पोधे लगे हुए है एक बहोत बड़ा सा पेड़ नजर आ रहा है स्कूल की खिड़की अ लगी हुई है।